कोई शोरूम कि ओपनिंग हुई है। इसमें बाइक्स हैं और स्कूटीस हैं। टू-व्हीलर की कोई शोरूम है।

मतलब सब कोई इससे नहीं जा सकता है सिर्फ स्पेशल लोग जायेंगे या फिर जो अलाउड होंगे वहीं जायेंगे जिनके पास आई.डी. कार्ड होगा वहीं जायेंगे।

सड़क और सड़क के बगल में लगी हुई बहुत सारी दुकान फल की फ्रूट्स की वेजिटेबल्स की फ्लावर्स की और भी बहुत सारी दुकानें --